यह मेजबान काफी अच्छी तरह से डेकोर किया गया है इसमें बोहोत अच्छी चीजों से सजावट की गई है।

और इसके तीन गुम्मज है सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा गुम्मज । नीचे लाल कलर के पिलर है और उसके सामने दो औरते गुजर के जा रही है जो पर्पल और हरी साड़ी पहनी है इनमे साइड मे बोहोत बड़ी सीढिया

यह एक गारमेंट की शॉप है जिसका नाम है पटेल गार्मेंट्स उसके साइड पे यू एन ओ का बोर्ड लगा है जिस पे सलमान खान के फोटो लगी हुई है। और जो --

अन्डरवियर और बानियाँन बेच रहा है उसके नीचे पवन लिखा हुआ है आर्ट्स पैनटेड एंड और साइड मे एक बहोत बड़ी दुकान है।

एक गेट पे दो लोग खड़े हैं एक पे एक लाल शर्ट पहन के खड़ा है और एक पे लेडीस खड़ी हैं साइड में तीन लोग बाते कर रहे हैं और यहां पे तीन पेड़ लगे हुए हैं सामने बिल्डिंग का कलर ब्राउन है और जमीन इसकी मिट्टी वाली।